यहां पे आप देख सकते हो ये चार ये यहां पे लंबी लाइन लगी हुई है ये यहां पे--

लिखा हुआ है और यहां पे ये--

आदमी हैं ये यहा पे खड़ा हुआ है।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

यहां पे आप देख सकते हो ये आइसक्रीम रखी हुई है।

रंग से लिखा हुआ लिखा हुआ है और यहां पे आप देख सकते हो एस_बी_आई लिखा हुआ है।

रेत ही रेत दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो आसमान दिख रहा है और यहां पे आप देख सकते हो।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

और यहां पे आप देख सकते हो--

है और यहा पे आप देख सकते हो ये मेज रखी हुई है।

और यहां पे चारों तरफ कच्चा मकान कच्चे केले पड़े हुए हैं यहां पर आप देख सकते।

यहा पे आप देख सकते हो सारे गाड़िया ही गाड़िया खड़ी हुई है।

यह यहां पे ये हरे रंग के पत्ते रखे हुए हैं और यहां पे ये देख सकते हो।